बड़े-बड़े पेड़ के परछाईयाँ दिखाई दे रही है हरे-भरे ग्रास दिखाई दे रहे हैं और एक कार खड़ी है और कार मे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं धन्येवाद।

पेड़ की परछाईयाँ दिखाई दे रही है और अ-- यह ऐसा लगता है के यह कुछ जंगल है धन्यवाद्।

उप्पर हमें सफेद कलर की छत दिखाई दे रही है पिलर दिखाई दे रहा है और एक लाइट दिखाई दे रहा है और अंधेरे का समय है शाम का समय है।